इस इमेज में मुझे एक टोल प्लाज़ा दिख --

हे यह मंदिर सिद्धिविनायक बड़ा गणपती मंदिर नौगांव में--

इस इमेज में मुझे एक--

इमेज में मुझे एक बहोत बड़ा स्कूल दिख--

इस इमेज में मुझे एक फ्रूट की--

बड़ी दुकान दिखाई दे रही है जैसे कि अंगूर दि--

है यह दुकान बहुत ज्यादा बड़ी लग--

इमेज में मुझे एक बहुत बड़ा हाल --

इस इमेज में मुझे एक बस दिख--

हर्ष चिल्ड्रेन वियर एंड होजियरी वियर यहां बच्चों के --

मुझे रिलायंस का पेट्रोल पंप --

और नजर आ रहे हैं।

में मुझे एक बहोत ज्यादा बड़ा टैटू पार्लर दि--